जो कि इस तरह का शो रूम जो है न अभी के समय मे--

और हम सभी इस को खाते भी है।

हम लोग वहाँ पे अपना काम --